और यहाँ लोग अधिक संख्या में दर्शन करने के लिए विदेशों से आते हैं आप भी यहां दर्शन के लिए आ सकते हैं।

देख सकते है यहाँ मतलब डांस का परफॉरमेंस चल रहा है जुबली डांस बेगुसराई मे और अब यहाँ आके अपना मनोरंजन कर सक--